जिसमें एक लड़की चेयर पे बैठी हुई अपना--

यह एक दुकान है।

एक रेड कलर का बाल्टी दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक पंखा लगा हुआ है कुछ डब्बे में--

यहां पीछे में कलरफुल टाइल्स --

यहां एक सामने में स्टेज है।

डेकोरेट किया गया है साइड में एक टेबल है।

यहां एक साइड में पेड़ है तीन--